पीछे कोने में एक ब्लैक बोर्ड रखी हुई है।

बगल में कुछ झाड़ियां और पेड़ दिखाई दे रही है।

सामने एक खंभा लगा हुआ है उसमें लाइट जल रही है।

दीवाल पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

कैफे के अंदर वाइट कलर की पेंट की गई है।

दीवार पर कुछ एल_ई_डी_ टिविया रखी हुई है।

ऊपर दीवाल को बैलून और रिबन से सजाई गई है।

सामने टेबल पर तीन बैलून रखी हुई है।

दीवाल पर एक फैम लगा हुआ है उसके नीचे एक बोर्ड है।

यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारे तरह तरह की समान रखी हुई है।

यह एक पहाड़ी इलाका है यहां पर बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक चूड़ी की दुकान है।

यह एक चर्च हैजहां पर ईसा मसीह की मूर्ति लगी हुई हैसामने बहुत सारे कैंडल जले हुए हैं।

यह एक बौद्ध भिक्षु की मूर्ति है जिसका कलर गोल्डन है।

टेबल के ऊपर एक बोतल और एक डायरी रखी हुई है।

सामने कुछ कुर्सियां खाली पड़ी हैं।

सामने बहुत सारे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। रोड पर एक आदमी पैदल चल रहा है।

यह एक दुकान है यहां पर बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं

किले का ऊपरी भाग खुला हुआ है ऊपरी हिस्से पर बहुत सारी झाड़ियां लग गई है।